और कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पर एक फोटो में कुछ लोग--

यह एक मंदिल का फोटो है।

जिसमें बहुत से कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

स्नान करते हुए दिखाई पड़ रहा है।

और एक व्यक्ति बंबईया मिठाई बेचते हुए फोटो में दिख रहा है।